और उस पार एक बड़ा सा गेट बना हुआ है जहां अंदर कॉलोनी बनी हुई है पास में कंस्ट्रक्शन का कम चल रहा है।

दूर दूर तक पहाड़ ही नजर आ रहे है छोटे-बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

काफी लड़के लड़किया दिखाई दे रहे है कुछ खड़े है कुछ लोग मस्ती कर रहे है कुछ लोग बाते कर रहे है।

एक जिम दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक लड़का जिम कर रहा है।

ये एक समुन्दर दिखाई दे रहा है जहां पे एक बड़ा सा शीप है और उसके पास में छोटा शीप दिखाई दे रहा है।

फिल्म दिखाई दे रही है यहां पे काफी सारी ऑडियंसेस बैठी हुई देख रही है यहाँ पे शाम का समय हो रहा है।

कुछू कम अच्छे है पीछे--

ब्लैक ड्रेस पहनी है कुछ लोग ऊपर स्लाइड के लिए खड़े है कुछ लोग नीचे जमीन पर हैं ।

के.एफ.सी है पिज़्ज़ा हट है जहां पर लिखा है कि स्टार्टिंग प्राइस सेवेंटी नाइन रूपीस से कैमरे लगे हुए है वाक आउट टेक अवे है।

कुछ सामान निकाल रहे है काफी सारे रिक्शा पीछे खड़े है ये पत्रिका का--

मेनू कार्ड रखा हुआ है हो रखा है। लाइट्स भी लगी हुई हैआगे दिखाई--